और यहाँ पर बिच मै एक हॉल है जिसके अंदर एक फुहारा है

यहाँ पर बहुत सारी देख रही है

यहाँ पर कुछ आदमी दिखाई रहे है